और हमें दिखाई दे रहा है एक राष्ट्रीय मौलाना लिखा हुआ है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल--

तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रही है बहुत सारी--

और पानी हमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारा।

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर--

मात्र छाया गर्ल्स हॉस्टल नेहरू नगर भोपाल लिखा है।

एक बेड हमें उस पे चादर और हमें तकिए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है एक ग्रूव लिखा हुआ है दीवार पर।

और पेड़ डगे हुए हैं हरे-हरे चारों तरफ नजर आ रहे हैं।

और हमें दिखाई दे रहे हैं पोस्टर लगे है।

बाइकेें खड़ी हैं और एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है।

और हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है अ रास्ता है सुनसान कोई नहीं है।

कुर्सियां रखी हुई हैं खिड़की के पास--

इस तस्वीर के अंदर हमें हरे हरे पेड़--

जमीन में हमें टाइल्स और दीवार पर भी नजर आ रहे हैंटाइल्स लगे हैं ।

लाल रंग का बना हुआ हमें दिखाई दे रहे है।